बीच में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो में एक बड़ा सा समुद्र दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर लोग दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो पर नाइट दिखाई दे रह--

मुझे इस फोटो पर लाइट दिखाई दे रही है। मुझे इस फोटो पर--